मेरे सामने एक बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है ये चर्च के अंदर का फोट दिखाई दे रहा है जहाँ ये वेडिंग का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ ये जहाँ ये लोग सर झुकाते हुए आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे है ये एक चर्च का फोटो हो सकता हैं ।

मेरे सामने एक कप की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ बहुत सारे कप दिखाई दे रहे है ये कप की दुकान दिखाई दे रही हैं ।

मेरे सामने एक व्यक्ति फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहा है च ये व्यक्ति के पीछे ब्लैक कलर की दीवाल भी देखी जा सकती है न ये व्यक्ति खुद का फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहा है इसके नीचे रेड कलर और ब्लैक कलर की टाइल्स बनी हुई भी देखी जा सकती है।

मेरे सामने एक व्यक्ति फोटो खिंचाते हुए दिखाई दे रही है और जहाँ मुझे एक सामने एक एक बड़ी- सी छोटी- सी ईमारत भी दिखाई दे रही हैं ।

--के सामने एक एक्सिस बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जहाँ एक्सिस बैंक का ऐ_टी_एम थोड़ी पुरानी सी बिल्डिंग में डिज़ाइन करा गया है जहाँ उसके आगे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और उसके एक्सिस बैंक ए_टी_एम के आगे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है और बहुत सारी गाड़िया भी दिखाई दे रही है एक सुबह का फोटो दिखाई दे रहा हैं।

ये मुझे एक मच्छी मार्केट का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ लोग बहोत सारी मच्छी बेचते हुए दिखाई दे रहे है कहीं मच्छी साफ करते हुए फिर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं।